ये एक टोटो शो-रूम है। हम देख रहें हैं।

वेटिंग हॉल में हम देख सकते हैं कि काफी भीड़ है।

यह होस्टल को वापस ठीक करने की जर --

रात के वक्त में भी प्लेयर्स बहुत अच्छे से --

ये एक बहुत पुराने घर की तस्वीर है। हम देख सकतें हैं की --

आस पास काफी सारे दुकाने है और यहाँ पर छो --

छोटा सा सफ़र तय कर सकते हैं। इधर से उधर जाने के लिए यह --

टोटो काफी है और ये वातावरण को हमारे प्रदूषित भी नहीं कर --

पहुँचाती है और शुद्ध रखती --

बहुत बड़ा पैमाने में फैला हुआ है।

यह एक बगीचे की तस्वीर है। बगीचा में बहुत सारे फु --

फूल अलग अलग फूल लगाए लगाए गए हैं। फूल देखने में काफी सुन् --

इ बहुत ज्यादा जरुरत है इसको रोज पानी चाहिए।

आप देख सकते है कि सोने की मूर्तियों को एक जगह --

ट्रेन में चढ़ने के लिए जा रहें हैं। ट्रेन --

खाली पड़ा हुआ है मोहल्ला के आसपास --

ये अच्छे से की गई हैं मोहल्ला काफी शांत --

या कोई पैदल ब्रिज हो।

यह एक जंगल के बीचो बीच बना रास्ता को तस --

कोई भी आर्डर लिया जाता है यहां पे हर तरह का --

सक्षम होते है उन्हें शिक्षा दी जा रही है एक टीचर --

और ये पढ़ने के लिए भी कितना लालसा रखते है।

मछलियाँ बहुत ज्यादा ही मात --

यह चट्टान काफी ज्यादा खतरनाक है।

शोरूम भी है हम कोई भी का गाड़ी यहां पे --

इसलिए ज्यादा खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी कोई नहीं रहता हैं।

सुन्दर लग रहा है और ये फु --

वातावरण को कम दूषित करने वाली ये वाहन --

हमारे लिए बहोत जरुरी हो गया है क्योंकि ये पॉल्यूशन --

और यहाँ पर अभी लोग आए नहीं हैं। यहाँ पर भी मतलब की रिसप --

लाल एवं धारीवाल चेन --

और यह बरसात का वक्त है इसलिए यहाँ --

आते हैं और यहाँ पर आके एन्जॉय करते हैं।

यहाँ हम देख सकते हैं की कुछ प्रोग्राम हुआ है और इस प्रोग्राम में लड़कियाँ --

देख सकते हैं की जगह की सजावट भी बहुत अच्छे से की गई है।

पूछो ही मत यहाँ पर और भी बहुत कुछ है।